दो-दो जगहें ए टेबुल मेज पड़ी हुई है और उसके ऊपर छतरी टंगी हुई है ।

पार्क दिख रहा है उस पार्क मे --

इस वीडियो में --

ये इमारत है और उसमे इमारत मे जिला की जगह में एक बाइक रखी हुई है |

वह दुकान बहुत अद्भुत बा नजर से देखी जा रही है और --

इस वीडियो में सामने एक सदर --

अंदर से मुख द्वार की ओर जाते हुए एक व्यक्ति अपने एक मरीज़ को लिए बाहर आता दिख रहा है।

इस वीडियो में सामने आदित्य विज़न सोनी ए.लजी. आई.एफ.सी. इत्यादि की --

और टी.वी. इसमें टी.वी. उपलब्ध है और सिमो के द्वारा से एक ऑटो और एक मोटर साइकिल --

कॉलेज सभा में छोटे बच्चे --

प्रतिमा रखी हुई है वो है।

दीवाल खड़ी हुई है उस दीवाल में ट्रेन के अनुसा --

जलाशय दिख रहा है और उस जलाशय में --

इस वीडियो में सामने छे बैंजो बाधक बैठे हुए है वे अपनी --

दोनों की दुकान है लाभ बुक हाउस --

अस्तापित है दुकाने और जिससे की --